अह एक पन्नी टंगी हुई दिख रही है नई-नई शॉप दिख रही है।

एक शिक्षक फोन पे बात करता हुआ दिखाई दे रहा है।

और नीचे लिखा हुआ है रंगोली से गणतंत्र दिवस--

पी ए इधर भी कुछ लोग बैठके बातें कर रहे हैं कुछ दे रहे हैं।

यह एक अ खुला मैदान दिख रहा है पहाड़ी इलाका जहां पर झरना दिख रही है दूर से बहेती हुई--

अ थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है पहाड़ों के बीच से निकलती हुई झरना--

अह यहां लोग खड़े हैं बाहर बच्चे दिख रहे हैं बैठे हुए बीच में कुछ पड़ा है गोल गोल जैसा।

और एक तरफ अ सिर्फ कुर्सी दिख रही है रखी हुई।

यह एक अ पन्नीयों की गोदान जैसा कुछ दिख रहा है जहां पन्नीया रखी दिखाई दे रही है।

अह इधर अंदर कुछ दिख रहा है छोटे-छोटे अह जो पाइप के नल आते हैं उसे।

अह बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं कपड़े की दुकान है।

अलग अलग कलर का केमिकल भरा दिख रहा है।

कुछ जो आयुर्वैदिक दुकान या फिर कीटनाशक--

थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा ऊपर गिला गिला पीछे कुछ दिख रहा हैं।

बना हुआ एक लड़का फोटो खिंचा रहा है हाथ में घडी है।

यह एक मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है जहां पर पंखा दिख रहा--